एक रोड पे काफी आदमी दिख रहे है जोकि कुछ खरीद रहे है बादल दिख रहे है आसमान दिख रहे है। रोड --

बेड लगा हुआ है जो की वुडन कलर है। बेड में गद्दे कंबल बिछे हुए हैं जो की कंबल लाल है बेडशीट --